स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यहां एक स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

यहां एक सुंदर सी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

यहां पर बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।

नाई की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

पर यहां पर बहुत पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कपड़ों की दुखान दिखाई दे रही है।

यहां साइकिल दिखाई दे रही है यहां साइकिल दिखाई दे रही है।

यह एक एक बहुत ही सुंदर दृश्य है।

औ यहां अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे--

और यहां अच्छे अच्छे तरीके से--

यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है।

जहां एक पूजा पाठ करते लोग दिखाई दे रहे हैं।

आसपास में बहुत से लोग अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे--